पहाड़ है जिसमें भी पेड़ लगे हुए हैं।

यहाँ एक खुला मैदान है कुछ दुरी पर बड़ी-बड़ी बिल्डिंग बनी हुई और एक पास में --

यहाँ एक फिटनेस जिम है इस जिम बहोत सारा समान रखा हुआ है।

नदी के पीचे एक पाड़ दिखाई दे रहा है जो की बहुत धुंधला धुंदला दिखाई दे रहा है ऊपर खुला आसमान है।